यहाँ पर कुछ फ्लॉवर पॉट रखे हुए दिखाई दे रहें हैं और कुछ जग भी यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहें हैं टेबलों पर यहाँ पर बहुत सारे बैलूनस दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।